सजावट किया है बहोत ही अच्छा डेकोरेशन है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है बहोत सारा लाइट्स लगा है और बहोत भीड़ भी है इस शादी में बहोत ।